काफि स्विच बोर्डस दिखाई दे रहे हैं। और ग्रे कलर में रंगा हुआ दीवार नजर आ रहा हैं। विंडो नजर आ रही हैं।

और एक वॉटरपार्क का नजारा लग रहा हैं। बिल्डिंग दिख रही हैं। वहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं। कुछ पानी मे भी दिख रहे हैं लोग और वॉटर बॉटल रखा हुआ हैं।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और कुछ कार्स नजर आ रहे है और कचरा मिनी की गाड़ी नजर आ रही है।

यहाँ पर दो बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमे से एक व्हाइट कलर की है। दूसरी व्हाइट और ब्लू कलर की रंगी हुई है। कार नजर आ रहा है जो व्हाइट कलर का है। कुछ लोग नजर आ रहे है।

कुछ बेंच जो है वो क्रीम कलर रंगे हुए है वो ही एक ग्रीन कलर से रंगा हुआ है जो ब्राउन कलर से रंगा हुआ है और ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड नजर आ रहे है विंडो है और एल_इ_डी लाइट्स लगी हुई है।

वही एक और नाव सामने नजर आ रही है जो वाईट कलर की है खाफी सारे बिल्डिंग्स वहाँ पर सामने में नजर आ रहे हे ओर आकश भी नजर आ रहा है।

पीछे साइड मे ग्लव्स दिखाई दे रहे है जिसमे रखा गया है और रेलिंग जो है वो ब्लैक कलर की है।

यह एक लॉन दिखाई दे रहा है जिसका एंट्रेंस पूरा ग्रीन कलर का पूरा दिखाई दे रहा है जो मोर दिखाई दे रहा है जो फ्लवार से की गई है ग्रीन कारपेट नजर आ रहा है।

बड़ा मैदान नजर आ रहा है जहाँ घास उगी हुई है हरी हरी मिट्टी नजर आ रही है।

वहाँ पर कुछ पेड़ की पत्तिया नजर आ रहे है जो हरे-हरे है। शैड नजर आ रहा है जो ग्रे कलर का है।

छत व्हाइट कलर की है। वॉच दिख रहा है। एल_इ_डी लाइटस लगी हुई है। ऐ_सी नजर आ रहा है। फ्लोरिंग ब्लैक कलर की है।